बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे पार्क है जिसके अंदर घास लगी हुई है।

इस पिक्चर में कॉलेज है कॉलेज की बिल्डिंग है वाइट कलर की है कॉलेज के बाहर एक बोट लगा है जिसमें--

ब लड़के बैठे हुए हैं लाइव ओवर पर--

दो लाल कलर की गाड़ियां खड़ी है आग बुझाने वाली जहाँ आग लग जाती है वहाँ पर--

रैडी टेबल लगे हुए हैं उनके हाथ में पेपर है एक --

शोरूम है जिसमें ड्रैसे है।